यह एक सड़क की फोटो है यहां दो कार खड़ी है।

यह शादी वाला गार्डन है।

यहां दो दुकानें बनी हुई हैं।

मंदिर पर दो झंडे बने हैं।